managing train tickets bought at irctc यानिirctc पर खरीदे ट्रेन टिकट को प्रबंधित करने के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि irctc के पिछले ट्रांज़ैक्शन का प्रबंधन कैसे करें
how देखेंगे कि टिकिटों की स्थिति कैसे जाँचें
ticket को कैसे print करें
ticket को कैसे cancel करे
कैंसिल करने की history और धन वापसी का स्वचालित email कैसे देखें
train ticket बुक कराने के लिए प्राइवेट यानि निजी websites होती हैं
हम कुछ प्रचलित websites देखेंगे
उनकी irctc से तुलना करेंगे
अभी हम irctc पर पहले की गयी bookings देखेंगे मैं irctc website पर login करती हूँ
नीचे जाते हैं
मैं transactions link पर click करती हूँ और यहाँ आपके पास booked history विकल्प है
booked history पर क्लिक करती हूँ यह password प्रविष्ट करने को कहता है
password प्रविष्ट करती हूँ go पर क्लिक करती हूँ
यह कहता है pnr number क्या है
टिकिटों की सूची यहाँ दी गयी है
मैं इस पर click करती हूँ और pnr status प्राप्त करती हूँ यह बताता है wait listed यानि प्रतीक्षा सूची 162 है
मैं इसे बंद करती हूँ मैं प्रिंट let सकती हूँ इसे दबाती हूँ
ये यहाँ है अगर कहती हूँ कि इसे print करो तो यह इसे print करेगा
मैं अपनी slides पर वापस आ गयी हूँ अब हम दूसरी slides पर जाते हैं
अब हम देखेंगे कि एक ticket को cancel कैसे कराते हैं
माना मुझे एक ticket cancel कराना है तो मैं क्या करती हूँ
अतः इस ticket को cancel करती हूँ
अतः मैं इस टिकिट को cancel करना चाहती हूँ इस टिकिट को select करती हूँ
मैं यह ticket नहीं चाहती
यह कहता है cancel करने के लिए select करें हमें यह select करना है उसका कारण है कि कभीकभी आप यात्रा के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का ticket book करा सकते हैं
तो यह पृथक रूप से cancel कराना संभव है माना दो व्यक्तियों का ticket है और आप किसी एक का ticket cancel कराना चाहते हैं
तो आपको केवल उसी व्यक्ति के box पर click करना है अतः इस पर click करें और फिर ticket cancel करें
are यह पूछता है कि क्या आप वास्तव में ticket cancel करना चाहते हैं मैं ok पर क्लिक करती हूँ
cancellation का status दिखता है यह बताता है 20 रूपए it गए हैं
89 नवासी rupees चुकाये थे वास्तव में मैंने 10 रूपए online सेवाओं के लिए दिए थे
20 रूपए कटे
money 69 उनहत्तर रूपए वापस मिले और ध्यान दें कि यह उसी account में वापस किये जायेंगे जहाँ से आरम्भ में रूपए चुकाये गए थे
अगर आप चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं
मैं पूर्व विवरण यानि history पर वापस जा सकती हूँ मैं slide पर वापस आ गयी हूँ
अब अगली slide पर जाते हैं
अब मैं समझाउंगी कि cancellation का पूर्व विवरण यानी history कैसे देखते हैं
अब जो मैं कर सकती हूँ now है मैं canceled history cancelled history को देख सकती हूँ
अब मैं अपना password प्रविष्ट करती हूँ
go पर क्लिक करें
यह बताता है कैंसिल किये हुए की pnr history cancellation के अगले दिन उपलब्ध होगी
लेकिन यह दिखाता हुआ लगता है अतः सारे कैंसिल किये हुए tickets यहाँ सूचीबद्ध होंगे
मैं slides पर वापस आती हूँ
अब दूसरी slide पर जाते हैं
मैं आपको रुपए वापसी का स्वचालित email दिखाउंगी
मैंने यह email पहले ही खोल लिया है
यह बताता है कि यहाँ दिए गए pnr के लिए 69 रुपए वापस किये जायेंगे
मैं slides पर वापस आती हूँ अब अगली slides पर जाते हैं
यहाँ train booking के लिए कुछ उपयोगी निजी websites हैं
हम अभी इन्हें देखेंगे
मैंने clear trip पहले ही खोल ली है
अब मैं आपको make my trip पेज दिखाती हूँ
अब हम yatra com का web पेज देखते हैं
अब slides पर वापस जाते हैं अब मैं अगली slides पर जाती हूँ
हम irctc की तुलना निजी website से करेंगे
irctc के क्या फायदे हैं
निजी websites पर सारी trains की सूची नहीं होती है
निजी websites लगभग 20 रुपए ज़्यादा महँगी होती हैं
निजी websites सुबह को देर से खुलती हैं
irctc की तुलना में प्राइवेट websites कम समय के लिए ही उपलब्ध होती हैं उदाहरणतः प्राइवेट websites सुबह को 10 बजे खुलती है जबकि irctc सुबह को 8 बजे खुलती है
अब हम निजी वेबसइट के फायदे देखेंगे
कभीकभी निजी websites irctc से अधिक तेज़ चलती है
निजी websites पर विमान और buses की टिकट भी book की जा सकती हैं
परिणामस्वरुप यात्रा से सम्बंधित सारी जानकारी एक ही स्थान से मिल सकती है
निजी websites पिछली खोज को भी याद रख सकती हैं
अपने लिये मैं irctc और निजी website दोनों का उपयोग करती हूँ
मैं spoken tutorial project पर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ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
इस mission पर अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro पर उपलब्ध है
हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गए हैं आई आई we बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद